उपर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए एक पोलिस वाला भी खड़ा हुआ है ।

इस साइड में जो इसका फ्लोर रहता है वो भी दिखाई दे रहा है ट्रेन --

स्टीडीअ दिखाई दे रहा है और क फैन दिखाई दे रहा है ।

यह किसी ओ जिला एव क्षेत्र न्यायालय जनपद क्षेत कबीर नगर का फोटो खीचा गया है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रहे है खुलास दिख रहे।

और अ अ जिसका अ दिखता हैं |

इसरे हिंगलाज बुक डीपो का है जहाँ पे स्पोर्ट स्टेशनरी एंड फोटो कॉपी बुक वगैरह का मिलता हैं ।

और यहाँ से सिढीयों से अंदर जा सकते है इसी तरह से एक ठो फोटो खींचा गया हैं |

जहाँ पे एक फोर व्हीलर पार्किंग है कुछ एक्टिवास खड़ी है कुछ दो तीन लोग भी दिख रहे हैं ।